मुझे यहां बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां पहाड़ भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां बहुत सारा बोतल दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां ऑरेंज कलर का चीज भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक कॉपी भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहा है औरत भी।

मुझे यहां एक नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा है बहोत बड़ा वाइट दीवार दिखाई दे रहा है।

और यहां पर मुझे बैंबू ट्री भी दिखाई दे रहा है।

और बाहर में बहुत सारा बंबू भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर मुझे बहुत सारा वॉल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एस_बी_आई ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

और एक कार भी दिखाई दे रहा है और शटर भी दिखाई दे रहा है मुझे।

मुझे यहां बहुत सारा मेरिंडा पेप्सी दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारा कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे व्हाइट दीवार भी दिखाई दे रहा है।

और खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

एल_ई_डी लाइट भी मुझे दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बहुत सारा पानी भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे एक स्टैचू भी नजर आ रहा है।

चेयर भी दिखाई दे रहा है।

हां मुझे बहुत सारा इमारत दिखाई दे रहा है और बहुत सारा पौधे भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे ब्लू सब बेंच भी दिखाई दे रहा है।

घर का पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहा बहुत सारा साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां बहुत सारा टायर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां नोटबुक भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां बहुत सारा जर्सी भी दिखाई दे रहा है।

और उसी के साथ मुझे जहां पीला कलर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर मुझे कुछ साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर मुझे एक इन एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे लाल रंग का वॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बाइक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है और कुछ वॉल भी।

भी नज़र आ रहा है।